यहां पे देख सकते हैं दवाई बेच रहे हैं और--

और उजला सा घर पेंट हुआ है जगह जगी खपरा ओपरा--

दो-तीन मोटसाइकिल भी है एक ललका मोटसाइकिल है एक स्प्लेंडर है एक पलटिना भी है।

और यहां पे फूल का पेड़ है बहुत अच्छा लग--

एक ये गोल कटाया हुआ है काली को तो रहे है वाले की तो रहे हैं।

यहां पे देख सकता है स्कूल है और बहोत सारा साइकिल रखा हुआ है रेंजर अलग है और--

और एक पोस्टर भी शायद ऊपर लिखा हुआ है और नीचे भी--

और बहोत ब आदमी भी है आगे भी मंदिल में बहोत सारा आदमी है एक आदमी आ रहे हैं इस साइड में और ऊ भी --

यहां पर देख सकते हैं मूर्ति वुर्ति है ऊपर भी एक पुलिस है दो आदमी है।

एक आदि पड़ी जी भी उतार रहे हैं भूत--

तीन आदमी बात कर रहे हैं आपस में और यहां पे एक गंदी वाला आदमी है यहां पे।

टोपी ओपी है पंडाल भी है अइ साइड में--

बगल मे भी कुर्सी उर्सी रखा हुआ हैं।